टापू हैं आजू बाजू टापू हैं देखो की दूर दूर तक का रोड खाली है जहां एक बाइक खड़ी हुई है।

मार्केट के आजू बाजू देखो बहोत सारे खंबे लगे हुए है बिजली के ट्रांसफार्मर लगा हुआ सामने एक दुकान है किराने की देखो की ये--

देखो कैडबरी रखी हुई है पूरे फ्रिज में जहां देखोगे कि आप देखो कि बोर्नविटा पावर वीटा मैगी रखी हुई है कॉफी रखी हुई है बहुत सारे जनरल स्टोर के समान है एक तेल--

प्रयोग की पार्किंग में बाइक खड़ी हुई साइकर खड़ी हुई है बहोत सारे घर लोग है आजू बाजू--

देख सकते हो कि ये एक मेन रोड है मेन रोड के आजू बाजू देखोगे कि एक पेड़ लगा हुआ--

देख सकते है एक पार्क है ये पार्क में एक बैंजा रखी हुई है बैठने की। मेन रोड से आते है देखो आजू बाजू पार्क में देखो की बहोत सी खेत है पेल वेल लगे हुए।

आप देख सकते हो की डिस्क का नाम भी बता सकते हो आप देखो कि चाकू कटा रखा हुआ है एक प्लेट रखी हुई है जिसमें डिश रखी--

देख सकते हो कि एक मेन रोड है जहां कुछ लोग मेन रोड मे देखो कि हाईवे हाईवेज है हाईवे में बाज़ू में एक पोल है।

जो नीली शर्ट पहना हुआ है आ गा पैन्ट पहना हुआ जिसकी सकल नहीं दिख रही है। गुलाबी शर्ट पहना है जिसकी सकल भी नहीं दिख रही है। बाजू में ई रिक्शा कॉ रखी हुई है।

देखो कि आइल्स रखे हुए हैं गाड़ी के ऑयल रखी साइकिल के ऑयल रखी है मशीन है जो हवा भरती है जो।

देख सकते हो कि एक ये होटल है जहां कुछ लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं देख सकते हो होटल का नाम नटराज होटल --